कपड़ा पहना हुआ है और वह झुकके कुछ नमन कर रहे है दो लोग के पास बैग दिख रहे है भेगवा कलर ग्रे कलर दिख रहा है उसके बाद नीचे उनके एक कुछ पन आसमानी कलर का कुछ डला हुआ है जिस के ऊपर वो बैठे हुए है आगे कुछ लोग बैठे हुए है ।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

पीछे एक आदमी बैठा हुवा है ब्लू टी शर्ट में और जब ब्लू टी शर्ट मे आदमी खड़ा है उस के हाथ में एक व्हाइट कलर का कागज कुछ दिख रहा है जो खुदाई की तरफ देखते हुवे उसे कुछ देख रहा--